काफ़ी परकोप है जिसका ये --

गाड़ियाँ रखी हैंयहाँ पे लोग हैं जो इसकी गाड़ी को रिपेयर कर रहे है अन्दर काफ़ी सारी टायर सेट किए हैं ।